यह डॉक्टर की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर आदमी दिखाई दे रहे हैं।

ओर काफी सारे दवाइयां रखी हुई हैं एक नीले रंग का परदा है।

और बच्चों के छोटे ट्रैक्टर टंगे हुए हैं और बॉल भी टंगी हुई है और वाइपर भी टंगे हुए हैं।

और कुछ भूरे रंग की लकड़ी भी पड़ी हुई है।

और इसके आसपास कुछ पेड़ पौधे दिख रहे हैं और जिनके पत्ते हरे हैं।

और एक लाल रंग का गमला भी रखा हुआ है।

और दो तराजू भी दिखाई दे रहा है और एक भी दिख रहा है।

और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं पंखों का रंग व्हाइट दिख रहा है।

और कुछ लाइट भी दिखाई दे रही है और एक सफेद टोपी पहन रखी है।

और पानी का रंग कुछ हरा सा और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

हल्का सा एक आदमी और दिख रहा है और यहां पर दो पन्नी भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ लकड़ी भी है।

और काफी सारी लाइटें भी लगी हुई है और एक औरत भी दिखाई दे रही है।

यह एक जिम की दुकान है और इसमें कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं और जिनका रंग काला और संत्री दिख रहा है।

और कुछ लकड़ी का सामान भी दिखाई दे रहा है और नीचे टाइलें भी लगी हुई है इनका रंग व्हाइट है।

जिसका रंग सफेद है और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

और इसका गेट लाल दिखाई दे रहा है और एक लाल रंग का पैना दिख रहा है।

और कुछ क्लासें दिखाई दे रही है और बच्चों ने जूते पहन रखे हुए हैं।

और काली मेहंदी भी टंगी हुई है और बच्चों के डायपर भीं टंगे हुए है।

और कोलगेट भी टंगे हुए हैं और हरी हरी चिमटियां भी लगी हुई हैं।

नारंगी कुर्सियां भी रखी हुई हैं और पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है।

और इसके बाद छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है।

और बादल भी हो रहा है और हल्का सूरज भी दिखाई दे रहा है।

का रंग पेला दिख रहा है और इसके बराबर में कुछ आदमी भी दिख रहे हैं।

और इसका ढक्कन का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

और एक भगोना भी दिखाई दे रहा है और एक कूलर दिखाई दे रहा है।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

और सर पर एक दिखाई दे रहा है।

काफी सारा पानी आ रहा है और पानी का रंग व्हाइट दिख रहा है।

एक बस भी दिखाई दे रही है और एक ट्रक भी खड़ा हुआ है और एक पाइप भी पड़ा हुआ है।

और पीले रंग के कपड़े पहन रखे है और हाथ में एक फोन भी ले रक्खा है।

और एक हरे रंग की बोतल भी दिखाई दे रही है और एक आदमी बैठा हुआ है।

और ऊपर एक नीले रंग का ठेला रखा हुआ है।

जिनका मुंह नहीं दिख रहा है और कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।